आदमी खड़ा हुआ है सफ़ेद कलर की शर्ट और भी पेन्ट पहने है ग्रे कलर का साइड से कुछ मशिने रखी हुई है।

सामने एक ऋषि सेर्विस सेंटर के नाम से बोर्ड लगा हुआ है और एक पर एक पद पर एक गाड़ी डमी हुई है जोकि धुली जा रही है बगल से एक महिंद्रा और सत्तावन पाँसो एकिनव--

सामने एक सफ़ेद की सफ़ेद वो एक गाड़ी है जिसके चारो तरफ से गेट खुले हुए--

बड़ी सी एक टेम्पो व ब वेन रखी हुई है उसके चारो तरफ से कुछ खुर्चिया बनी हुई है और कुछ गाड़िया रखी हुई है।